यह एक झरना है झरना पहाड़ से नीचे गिर रहा है।

यह एक जयमाला स्टेज है स्टेज पर दूल्हा और दूल्हन खड़े हैं।

स्कूटर में दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं एक महिला है एक पुरुष है चेयर पे बैठे हुए हैं।

एक टी_वी लगा हुआ है हॉस्पिटल बहुत बड़ा है।

यह एक नाक नाटक मंडली है।

नाटक मंडली में बहुत सारे महिलाएं काम कर रही हैं।

और पीछे एक गेट बना हुआ है।

रोड पे ऑटो रिक्शा चल रहा है।

कार चल रहा है बैगनी कलर का।

मिठाई में लाई रखा हुआ है मिल्क केक रखा हुआ है।

कार लगी हुई है अंदर पार्क जैसा दिख रहा है।

यह एक आश्रम है जिसका नाम है--

लाल कलर का रंगा हुआ है बगल में मॉल है।

ऊपर लाइट लगी हुई है मैप लगा हुआ है।

पेड़-पौधे हैं पीछे बिल्डिंग है।

हॉल है हॉल में--

घर के सामान रखे हुए हैं।

इसमें एक्सरसाइज करने की मशीन रखी हुई है।

आग बुझाने वाली मशीन लगी हुई है।

यहां पे महिला डांस कर रही है।

पीछे लाइटें लगी हुई है।

पहाड़ के बगल में पेड़ है।

जो कि अंग्रेज के जमाने से बना हुआ है।

और नीचे दो फ्लावर लगे हुए हैं।

ऊपर इंटीरियर डिजाइन है नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

और पीछे बिल्डिंग है पेड़ पौधे हैं।

यह एक डॉक्टर का क्लीनिक है।

भाटक एजुकेशन जिसमें दुकान है।

जिसमें फ्लावर का डेकोरेट किया जा रहा है।

रिक्शा है और स्कॉर्पियो लगा हुआ है।

यह एक जिम है जिम में एक्सरसाइज की मशीनें लगी हुई है।

मुस्लिम पर खड़े हैं एक बैठे हुए हैं।

शब्द है पानी की टंकी है।

बेंच पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

कुछ बच्चे स्कूल ड्रेस में हैं कुछ बच्चे बिना स्कूल ड्रेस के हैं।

यहां पे एक मकान को बनाया जा रहा है।

पिलर खड़ा हुआ है ऊपर आसमान है।

जिसमें बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

बच्चे नीला स्काई बलू रेड और--

जहां पे दो जोड़ों का शादी हो रहा है।

दो डब्बा रखा हुआ है स्टील का।

पीतल का लोटनी रखल है।

जहां पे लोग जिम करते हैं।

ऊपर आसमान है नीचे पेड़-पौधे हैं।

सब्जी मंडी में धनिया का पत्ता रखा हुआ है।

और साथ में पीछे बैंगन है केला है।

इस पे चॉकलेट रॉक का दुकान है।

और कुछ लोग इसको खींच कर ले जा रहे हैं।

यह एक डॉक्टर का मेडिकल है।

यह एक नदी का किनारा है।

यह एक मंचली मंडी प्रतीत हो रहा है।

और बाकी बच्चे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

इसमें करने का स्टैंड भी लगा हुआ है।

नीचे टाइल्स लगा हुआ है ऊपर करकट का बना हुआ है।

और काफी सारे मैकेनिक काम कर रहे हैं।

म्यूजिक का के प्रैक्टिस कर रहे हैं।

और लहसुन रखा हुआ है अदरक रखा हुआ है बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है।

जिम में बहुत सारा डंबल रखा हुआ है।

फूल माला से लदा हुआ है ऊपर बोड़ा टंगा हुआ है करकट का शेड बना हुआ है धनिया का पत्ता रखा हुआ है पीछे अंकल जी खड़े हैं।

ऊपर आसमान है आसमान का कलर मल्टीस्टेट इंद्र धनुष जैसा है।

उसके ऊपर लाइट लगा हुआ है चार जो वाइट रंग का है ।